एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर पर छोटी-छोटी बोहोत बड़ी बोहोत सारी लाइटे लगी दिखाई दे रही --

में टोस रखे हुए हैं। तीन पानी की बोतल भी रखी हुई दिखाई दे रही --

एक मकान जैसा दिखाई दे रहा है जिस --

स्टेज पर माता रानी की मंदिर भगवान जी की हनुमान जी महाराज की और एक अ शंकर भगवान की एक प्रतिमाएं बैठी हुई दिखाई दे रही --

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं एक लोहे का खम्बा दिखाई दे रहा है आसमान सफ़ेद दिखाई दे रहा है --

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग में दो खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। बिल्डिंग का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है और एक --

आसमान सतरंगी दिखाई दे रहा है। आसमान में धारियां जैसी दिखाई दे रही है। चंद्रमाँ दिखाई दे रहे हैं।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

लगी दिखाई दे रही हैं कुर्सियां पे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ढोल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक प्लस का निशान लगा दिखाई दे रहा है दीवारों पर टेन्ट लगा दिखाई दे रहा है।

एक हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल में बहोत सारी वाली कुर्सियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं। हॉल में एक स्टेज लगा हुआ दिखाई दे रहा है स्टेज --